creating a presentation पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम impress window में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बार में सीखेंगे
हम यह भी सीखेंगे:
नई slides प्रविष्ट करना
मौजूदा slides copy करना
impress में विभिन्न fonts का उपयोग करना
fonts को format करना और slides को डिलीट करना
यह tutorial ubuntu linux os वर्जन 1804 और libreoffice suite वर्जन 635 का उपयोग करके recorded किया गया है
presentation sampleimpress odp खोलें जिसे हमने पहले बनाया था
यह file आपको इस tutorial पेज पर code files link में प्रदान की गई है
कृपया file को download और extract करें
एक copy बनाएं और फिर इसका अभ्यास के लिए उपयोग करें
अब impress window को नजदीक लाते हैं
centre में हम workspace देखते हैं जो हमारा कार्य क्षेत्र है
हम अपनी आवश्यकता के अनुसार workspace के we को customize कर सकते हैं
ऐसा करने के लिए menu bar में view menu पर जाएं
फिर view tab bar विकल्प चुनें
ऊपरी भाग पर workspace में view buttons नामक 4 टैब हैं
default रूप से normal tab चयनित है
यह व्यक्तिगत slides बनाने के लिए मुख्य view है
outline tab outline format में प्रत्येक slide के लिए विषय का शीर्षक bulleted और क्रमांकित सूची दर्शाता है
notes tab आपको प्रत्येक slide में notes जोड़ने की सुविधा देता है
ये notes presentation को दिखाते समय दिखाई नहीं देते हैं
slide sorter tab slide के thumbnails दर्शाता है
फिर से normal tab पर click करें
standard toolbar में display views icon पर क्लिक करके इनको access करने का अन्य तरीका है
यहां हम workspace के भिन्न व्यू को दर्शाते हुए कई icons देख सकते हैं
screen के बाईं ओर slides pane है
यह presentation में slides के thumbnails सम्मिलित करता है
दाईं ओर sidebar है इसमें 7 सेक्शन हैं
sidebar में properties named पहले section पर click करें
इसमें layouts named property है
इसमें कई इन्बिल्ट layouts है
हम अपनी आवश्यकतानुसार सीधे इन layouts का उपयोग या इनको संशोधित कर सकते हैं
जैसे ही हम श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं हम इनमें से प्रत्येक sections को विस्तार से देखेंगे
अब properties section बंद करें
ऐसा करने के लिए properties section के ऊपरी दाएं कोने में x पर click करें
add दूसरी खाली slide में कुछ कंटेंट जोड़ते हैं
slides pane में 2nd slide पर click करें
click to add title नामक textbox पर click करें और इसमें overview type करें
फिर click to add text नामक textbox पर click करें और निम्न text टाइप करेः
summarize the main plans
add body textbox में कंटेंट में bullet points जोड़ें
तो पहले ctrl + a कीज़ दबाकर सभी वाक्य चुनें
फिर properties section पर click करें
lists property पर जाएं और toggle bulleted list icon पर click करें
properties section बंद करें
text में बदलाव पर ध्यान दें
अब सीखते हैं कि presentation में now slide कैसे प्रविष्ट करें
यहां slide प्रविष्ट करने के दो तरीके हैं
पहला तरीका देखते हैं
slides pane में इस पर क्लिक करके slide 2 चुनें
यदि आप अपने libreoffice window का आकार बदलते हैं तो कुछ icons दिखाई नहीं देते हैं
उस स्थिति में छिपे icon को देखने के लिए toolbars के अंत में double arrow icon पर click करें
standard toolbar में new slide icon पर click करें
slide 2 के बाद एक नई खाली slide प्रविष्ट होती है
नई slide को जोड़ने के लिए में आपको अन्य तरीका बताता हूं
menu bar में slide menu और फिर new slide विकल्प पर click करें
एक बार फिर हम देखते हैं कि नई खाली slide प्रविष्ट हो गई है
इस खाली slides में कुछ कंटेंट जोड़ते हैं
slides pane में slide 3 चुनें
click to add title textbox पर click करें और इसके अंदर short term strategy type करें
इसीतरह 4th slide के लिए टाइटल long term goal set करें
अब सीखते हैं कि slide को copy कैसे करें
यहां दो तरीके हैं जिसमें हम slide की copy बना सकते हैं
पहला तरीका देखते हैं
slides pane में slide 3 पर क्लिक करके इसे चुनें
standard toolbar में duplicate slide icon पर click करें
slide 3 के बाद एक नई duplicate slide प्रविष्ट होती है
वैकल्पिक रूप से menu bar में slide menu और फिर duplicate slide विकल्प पर click करें
फिर से हम देखते हैं कि नई duplicate slide प्रविष्ट हो गई है
अब सीखते हैं fonts के बारे में और fonts को format कैसे करें
slides pane में overview नामक slide पर click करें
body textbox पर click करें और text की दूसरी line चुनें
sidebar पर जाएं और properties icon पर click करें
character property में font name को carlito करें
फिर font size को 26 से 32 करें
ध्यान दें कि font हमारे चयन के अनुसार बदल गया है
अब font का रंग बदलते हैं
body textbox पर click करें और ctrl + a कीज दबाकर पूर्ण text चुनें
character property में font color icon पर जाएं
फिर इसके आगे ड्रापडाउन arrow पर click करें और अपनी पसंद का कोई भी रंग चुनें
मैं teal रंग चुन रही हूं
text में रंग में बदलाव पर ध्यान दें
अब title textbox पर click करें और पूर्ण text चुनें
फिर से character property पर जाएं टेक्स्ट पहले से ही बोल्ड है
अब italics और underline के लिए icons पर click करें
notice the change in the text text में बदलाव पर ध्यान दें
अंत में presentation से slide डिलीट करना सीखेंगे यहां यह करने के दो तरीके हैं
पहला तरीका है slide pane में slide 5 slide चुनें
फिर standard toolbar में delete slide icon पर click करें
दूसरा तरीका है slide pane में slide 4 slide चुनें
इस slide को डिलीट करने के लिए keyboard पर delete की दबाएं
save icon पर क्लिक करके अपनी presentation में हमारे द्वारा किए गए सभी बदलावों को सेव करें
इसी के साथ हम इस spoken tutorial के अंत में आ गए हैं संक्षेप में
इस tutorial में हमने impress window में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में सीखा
हमने यह भी सीखा:
नई slides प्रविष्ट करना
मौजूदा slides copy करना
fonts format करना और slides डिलीट करना
नियतकार्य के रूप में practiceimpress odp फाइल खोलें
2nd slide के बाद नई slide प्रविष्ट करें
3rd slide के body textbox में कुछ text type करें
text का font size 36 करें
text को bold italic underlined और नीले रंग का करें
3rd slide की copy बनाएं
presentation को सेव और बंद करें
निम्नलिखित link पर मौजूद video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
हम spoken tutorial का उपयोग करके कार्यशालाएँ आयोजित करते हैं और प्रमाणपत्र देती है
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
कृपया अपनी समयबद्ध queries को इस forum में post करें
spoken tutorial project mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है
इस tutorial का योगदान मूलरूप से 2011 में desicrew solutions pvt ltd द्वारा दिया गया था यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से मैं जया अब आपसे विदा लेती हूं धन्यवाद